यह एक इरेस्टोरेंट प्रतीत होता है। जिसमें की टेबल लगाए गए हैं कुर्सियां लगाई गई है।

आस पास के क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं और कुछ बड़े पेड़ हैं तो कुछ छोटे छोटे पौधे हैं नारियल का पेड़ भी प्रतीत हो रहा है।

एक कपड़ा का दुकान है जिसमें बहुत ही अलग अलग रंग के कपड़े रखे गए हैं।

आसपास का क्षेत्र बहुत ही साफ सुथरा है नीचे में अह मार्बल का यूज किया गया है जो कि बहुत ही सुंदर है।

यह एक पार्क है जिसका नाम हनुमान टिकरा पार्क के नाम से प्रदर्शित किया गया है।

आसपास का क्षेत्र बहुत ही साफ सुथरा है एक व्यक्ति बाइक का पर बैठा हुआ है।

बाइक पर बैठे हुए व्यक्ति के को अ हेलमेट पहना हुआ है।

दुकान को बहुत ही साफ सुथरा रखा गया है। लाइटिंग बहुत ही अच्छा से किया गया है।

इसमें सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगाया गया है और इसमें डेस्क भी लगाया गयाचेयर भी है।

आस पास का चित्र बहोत ही साफ सुथरा है एक अलमारी भी रखा गया है जो लॉक है।

और इसमें जो रोड बिछाए बना है वह मार्बल से बना हुआ है।

यह एक झरना जसन प्रतीत होता है जो कि ऊपर से एक छोटी सी नदी का कुछ भाग का पानी नीचे की ओर गिर रहा है।

और जो कुर्सी है कुर्सी के उपर जो लगाया गया है उपर से वो वाइट कलर का है आस पास का चित्र बहुत ही सुन--

खजूर का पेड़ प्रमुख है और आसपास का क्षेत्र बहुत ही हरा भरा है।

देखने से तो यह एक पार्क प्रतीत होता है जिससे कि एक व्यक्ति पार्क से निकलते हुए नजारे दिख दिख रहे हैं जो कि एक स्कूटी पर बैठा हुई है।

और आसपास का क्षेत्र बहुत ही सुंदर सुहावन लग रहे हैं।

उपर जो ओ आसमान है नीला दिखाई दे रहा है।

सबसे बड़ा डब्बा जो है कार्टून का ऊपर में रखा गया है।

इसमें क्यू_आर कोड स्कैनर भी लगा हुआ है।

और इसमें पीछे में एक पोस्टर भी लगा हुआ है आस पास का क्षेत्र बहुत ही --

चबूतरा लाल कलर का है उसके आगे में एक फ्लावर दिखाया गया गुलदस्ता दिखाया गया--

यह एक लाल घर है इसके बहार में बहुत सारी बाइके खड़ी है।

और इसमें बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो कुछ व्यक्ति खड़े हैं।